मछली जो कि मत्स्य पालन का अहम अंग होता है और बहुत से लोगों की आजीविका चलता है। तो हम देख पा रहे है कि बहुत सी मछलियां जो कि गंगा नदी में पकड़ी गई होंगी अक्सर यहां पे --

हवाई अड्डे पर यूज की जाती है। इस्तेमाल की जाती है समान लाने या लेजाने के लिए वो खड़ी वहां नजर आ रही है और अ विमान में शायद पेट्रोल भरा जा रहा है।

किसी शादी समारोह के घर के बाहर की तस्वीर जहाँ पे एक अक्सर गाडिया खड़ी रहती है पार्किंग में वहां का ये दृश्य है। लाईट लगी है काफी अच्छा लग रहा है और साथ में देखा जाए तो कुछ दो पहिया वाहन भी वहां पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं जो पार्क कर रखे हैं लोगो ने।

हम देख पा रहे है कि यहाँ तागड़ी के साथ में दो लोग बेठे हैं या बच्चे बैठे हैं। वो लोग जो भी है अपने लिए अ लोगों के लिए मछलियाँ वहाँ पे रखे हुए हैऔर मछली बेचने का काम कर रहे है।

गंगा नदी का पानी अक्सर इन्ही बांध के खुल जाने से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लोगो को उनके आजीवीका को भी छीन लेता है ।

पिछले कुछ देर से हम लगातार विमान की ही बात कर रहे हैं तो ये भी भारत की सबसे प्रमुख कंपनियों में से स्पाइस जेट डॉट कॉम का यानी ऑफिशियल वेबसाइट है उसी का --

प्रकृति के कुछ जो सबसे अच्छे नज़ारे होते है उन्ही का ये नजारा है। एक खुबसूरत बरफ से ढका पहाड़ और साथ में कुछ ऐसे पोधे जो पहाड़ो पर उगते है। तो उन दोनों को मिलाकर जो --

पिछली तस्वीर में भी हमने बात की थी मतस्य पालन के बारे में। ये भी बिलकुल वैसा ही है। कुछ मछलियाँ रखी हुई है मछुआरे के परिवार वाले लोग या फिर हो सकता है ये मछुआरे ही हो वो मछलियों को या तो साफ़ कर रहे है ताकि लोगो को बेच सके या फिर देखा जा रहा है की अगल-बगल जो भी जीव-जंतु होते हैं उनको साफ किया जा रहा है।

देखने में और साज सजावत भी काफी अच्छी है हो सकता है? दुल्हन का इंतजार कर रहा है दूल्हा।

जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे शादी में जो समारोह में जो भी काम वगैरा होता है।

जैसा की हम कुछ तस्वीरों में हम लगातार बात करते आ रहे है की मत्स्य पालन कैसे देख की इकॉनमी को अच्छा बनता है बढ़ावा देता है वैसे ही बनारस में ये लोग गंगा से मछलियों को पकड़ कर मछुआरे लोग अपने ग्राहकों को बेचते है हम देख पा रहे है कुछ मछुआरे --

और हम देख पा रहे है के ये इंडिको के विमान कुछ सफ़ेद है और नीले रंग के बने हुए है आस पास कुछ कर्मचारी ट्रक वगेरा से सामान ला रहे है या ले जा रहे है या फिर विमान में पेट्रोल भरने का काम कर रहे है और कर्मचारी वाकई अपने आप में ही मेहनत करते हुए दिख रहे है।

जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां पे एक मंच जैसा कुछ सजा है और समारोह के लिए कुर्सियां वगैरह लगाई गई है जोकि काफी सुंदर लग रही है। अपने आप में ऊपर जो उच्चता की गई है। वह भी काफी सुंदर देखने में लग रही है हमें।